इस इमेज में यहां पर कार के पास में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और कार भी खड़ी हुई है।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

इस इमेज में सामने एक इमारत दिखाई दे रही है और गेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर जंगल का रास्ता दिखाई दे रहा है और पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर नदी दिखाई दे रही हैं और एक लड़का बैठा हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है सामने स्टेज भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर पूजा चलती दिखाई दे रही है और कुछ औरतें भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर गेट दिखाई दे रहा है जिसपे एयरपोर्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर पिच बनी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में मंदिर दिखाई दे रहा है नीचे कुछ औरतें बैठी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में हॉल दिखाई दे रहा है और कुछ महिलाएं खाना बनाती नजर आ रही है।

जिस पर एक आदमी चल रहा है और बस भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और कार में पेट्रोल डलवाते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक एंबुलेंस दिखाई दे रही है और पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहाँ पर बांग्ला दिखाई दे रहा है और सड़क भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल सोफे लगे हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर दुकान दिखाई दे रही हैं और सामान भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक रोड दिखाई दे रही है और यहां पर कार चलते नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और दीवार पर डिजाइन नजर आ रही है।

इस इमेज में यहाँ पर रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और दीवार पर बैनर भी लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर बिल्डिंग बनती दिखाई दे रही है और गेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर रेसिंग दिखाई दे रही है और कुछ बच्चे दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सड़क के पास में दुकान दिखाई दे रही है और दो तीन लोग नीचे खड़े नजर आ रहे हैं।